भवन के दरवाजे पर एक बड़ा सा सोलर पैनल लगा हुआ है।

कुछ सफ़ेद रंग की है कुछ पीले काले रंग के भी है।

किनारे पर कुछ लोग हैं। उन्होंने भी मास्क लगा रखा हैं। कुछ ने दुपट्टे से मुँह ढका हैं।

यहाँ सामने लकड़ियाँ रखी हुई है। लकड़ियों को बांधा गया है। किनारे कुछ लकड़ियां खड़ी हैं।

यहाँ सामने बस की बगल में एक और बस है। दूर पर काफी सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही है। पीछे एक बड़ा सा टॉवर है।

सामने एक माल गाड़ी खड़ी हुई है। यहां सामने प्लेटफार्म पे एक कुत्ता सो रहा है।

यहाँ सामने डेस्क है उसके ऊपर भी सामान रखे हुए है।

यहाँ नीचे मैदान में छोटे-छोटे घास लगे हुए है।

और मसाले हैं। किनारे डब्बे हैं। नीचे बिस्किट वगेरा हैं।

किनारे पर काफी बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं।

किनारे पर एक छोटा सा कपड़ा टांगने वाला लटका हुआ है। यहां सामने रोशनी आ रही है।

किनारे पर भी कुछ कागज के भी डिजाइनर्स फूल लगाए गए हुए हैं।

नीचे सामने बड़ा सा बॉल रखा हुआ है। यहाँ सामने शीशा लगा हुआ है।

यह सामने स्टेज पर शादी का फंक्शन हो रहा है।

यहां किनारे कुछ फूल नज़र आ रहे है।

छेद कर रहा है नीचे जमीन पर हथोड़ा और लकड़ियां पड़ी हुई हैं।

यहां किनारे काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए है। बच्चा छोटा सा है।

पानी गिरने की वजह से पत्थर गीले हो चुके है।

यहाँ सामने जमीन पर काफी सारी केचुली लगी हुई है।

यहाँ सामने एक आदमी कैमरा लेके खड़ा हुआ है उसने हाथ में पर्ची ले रखा है।

यहाँ दूर-दूर पर पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं।